ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे देखेंगे दो लड़के बैठे है और ब्लैक कलर की टेबिल रखी है टेबल में दौड़ में मिर्च मसाले और साइट रखे है और बीच में पानी की बॉटल दो चाय के कप रखे है।

उसके नीचे काफी सारी भीड़ हेगी जो की लोग आ रहे जा रहे हैं नीचे काफी सारी बाइके खड़ी है लेफ्ट मे एक रिक्शा खड़ा हुआ है राइट साइड एक बिल्डिंग और दिख रही है।

यह एक फैक्‍टरी है जहाँ पर देखेंगे ये लोग काम कर रहे है और उनके सर पे हेयर कवर की टोपी लगी हुई है।

ये एक वेयरहाऊस है जो कि काफी बड़ा बना हुआ है और यहाँ बहुत सारे वर्कर काम कर रहे है और ऊपर दे‍खियें टीन सेट डला हुआ है लोहे के पिलर लगे हुए है और लोहे लगे हुए है चारों तरफ।

राइट साइड एक मूर्ति है पीछे दो छोटी मूर्तियां है और यहाँ काफी सारे पंडित खड़े है और लड़के लोग आदमी लोग खड़े है उनके साथ फोटो खिंचवा रहे है पीछे ब्लू कलर का पर्दा लगा हुआ है।

ये एक क्लास रूम है जहा पे देखेंगे कि काफी सारे बच्चे हैं जो की रेड ड्रेस पहने हैं और यहाँ पे एक मैम खड़ी है जो की व्हाइट ड्रेस में हेगी और पीछे जाली है और यह टेबल रखी हुई है।

पर देखेंगे तो काफी अच्छी झालर जैसे सजावट हुई है पीछे काफी सारे पेड़ दिख रहे हैं छोटे मोटे सब।

ये एक शादी का स्टेज बना हुआ है जो के चारों तरफ देखेंगे लोहे के पाइप से बना हुआ है और उसमें चारो तरफ लाइटें लगी हुई कलफुल ।